ये भी एक कॉलेज है बच्चों का जो कि पक्का बना हुआ है | प्लास्टर नहीं हो रखा है थोड़ा व्हाइट कलर से पेंट किया गया है| बीच में इसके रास्ता जा रही है इसके साइडो में--

यहां एक बड़ी सी गंगा बह रही है। गंगा में कुछ बोट है वाइट कलर की स्काई ब्लू कलर की ब्लू कलर की।